भूमि पर बहोत सारे बच्चे ग्राफ कर रहे है जिन मे से सभी बच्चो के हाथो में--

स्पीकर बड़े-बड़े लगे हुए है बैठने के लिए खुर्शियाँ लगी हुई है जिनमे--

बिजली के खंभे और उनमे लाइटें लगी हुई है।

चड़ने उतरने के लिए सीढ़िया और कांच की--

टाइले लगी हुई है किनारों पर दीवारों पर बहोत ही सुंदर--

किनारों पर दीवारों पर और किना बहोत ही सुंदर कर्टेन जो की--

छोटी- बड़ी चट्टानें है पत्थर बने हुए हैं।